यह मंदिर बहुत ही बड़ा है सभी भक्तगण मन्नत मांगने की --

इस होटल को सभी लोग बुक करते हैं यहाँ पे शादी फंक्शन मीटिंग और सभी --

सब लड़के आदमी बॉडी बनाने के लिए आते हैं यहाँ पे जिम आने से बहुत सारी मशीने हैं | यह जिम आने से हमारे शरीर --

यहाँ पे दो गार्ड हैं और यहाँ सभी लोग घूमने के के मॉल में कपड़े खरीदने --

यहाँ दो बस खड़ी है और बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हैं यह बाज़ार में बहुत ही भीड़ --